और यहाँ पे इसे पैसा निकासी किया जा सकता है और यहाँ पे कुछ पुरुष भी हैं जो की पैसा निकालने के लिए आये हुए हैं।

यह एक पेन्सिल और किताब की दुकान है जिसमें कोई ग्राहक कोई कल कुछ कलम लेते हुए नजर आ रहे हैं।

--ओर जिसमें एक ग्राहक कुछ बात करते हुए टेम्पू ओर टोटो के बिषय में।

एक बैंक है। जिसमें दो महिलाएँ एक पुरुष अपने बैंक कर्मचारी से बात कर रहे हैं।

और एक महिला अपने मोबाइल से बैठे हुए है चेयर पे सेल्फी ले रहे है बहुत अच्छी लाइट लगाए गए है।

बीच से होटल का रास्ता है दोनों साइड बैंक है।

बाबा कुछ बोल रहे है और भक्त सभी ध्यान से सुन रहे और यह मंदिर भी बहुत ही साफ-सफाई वाले स्थान है।

और कुछ लोहे का पाइप है और प्लाइ है ऊपर लगा हुआ जिससे नया मकान बनाया जाता है।

यह एक बहुत बड़ी एयरपोर्ट है सामने जिसमें बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए है एवं कुछ बच्चियां भी आई है।

यह मंदिर का एक प्रवेश द्वार है जिसके बाहर साइड।

--से आदमी प्रवेश करते हैं तो फर्स्ट में बहुत सारी दुकान मिलती है।

जाता है जो की सभी पुरुष कतारबद्ध से पैसा निकाल रहे हैं।

सुरक्षित एवं सुजीत ढंग से सजाई गयी है और ये देखने में काफी खुबसूरत --

यह एक ए_टी_एम है जिसमे पैसा निकासी की जाती है जमा की जाती है।